नदी के किनारे में बरा बरा पेर भी है।

ये एक ग्राउंड में मुझे चर्च दिख रही है।

इसके बीच दो बिल्डिंग है दोनों बिल्डिंग सफेद रंग का है।

यहां मुझे बड़ा सा सीढ़ियां दिख रही है।

दीवारों को सफेद रंग लगाया हुआ है।

यहां सूखा जमीन के बीच हरा भरा घास भी है।

और चार काला काला डी_जे है और कोना कोना में तीन--

और दो खड़ा हो के है।

में चेयर भी अरेंज करके है।

हरे रस्ता में बनी हुई ब्रिज का एक एंडिंग पार्ट है।

यहां पे सुन्दर सा रंग बिरंगी घर दीख रही है।

यह घर को बहुत सारा मिला कर लगा हुआ है।

पीछे पार्ट में पिंग लगाके है।

इस साइड की ऑरेंज लगाया हुआ है।

सामने वाला पोर्शन को ग्रीन लगाया हुआ है।

ऊपर में पिंक और येलो मिक्स करके लगाया हुआ--

इसके फ्लोर टाइल से बनी हुई है यहां मुझे ऊपर--

पंखा और लाइट बस भी दिख रही है।

यहां एक गारी की रेस है। यहां सामने मशीन रखी है।

कोना मे बाइक भी है बाइक के ऊपर--

यहां एक गार्डन है सामने में मुझे एक पिंक कलर की गुलाब दिख रही है।

इक गार्डन में फेंसिंग भी लगा के है।

यहा एक रेस्टोरेन है।

यहां तौलने के मशीन अलग अलग शेप साइज और डिजाइन का है।

यहां एक फार्मेसी के छोटे पोर्शन है यहाँ मुझे दवाइयां दिख रही है।

ऊपर में हाईटेक एसे लिखके पोस्टर चिपका के है।

कुर्सी लाल रंग का है यहां बच्चों जमा हुआ है।

यहा दो लड़की सामने में खड़ा है बच्चों ज्यादातर नीला रंग का कपड़ा पहन के है पीछे में बड़ा बड़ा पेड़ है।

बिल्डिंग सफेद रंग की है।

ये लाल रंग के है।

कोना कोना मे फूल भी सुंदर से किए हैं।

यहां रूम की दीवारें सफेद रंग से लगा हुआ है।

और इस किनारे में बरा बरा सुखा सुखा पत्थर दिख रही है।

वहां टेबल लाइन लाइन से रखी हुई है।